खीरा प्याज और नींबू फिर मिर्ची एक कटोरी में सब्जी और दाल रखे हैं।

कंप्यूटर काटा रखा है उसके बगल में लॉलीपॉप ब्रेड रखा हुआ है।

ये फुल गेंदा फुल पीले कलर का ऐ रखा हुआ है।

पर्दे लगी हुई है पीले कलर का पेंट पुता हुआ है बोर्ड लगा हुआ है नीचे तीन लड़कियां है जो यो-योगा कर रही हैं।